मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें परेश वाशिंग मशीन --

जो की एक कैमरा सा ले रखा है हाथ में और सिर पे वाइट टोपी पहन रखी है हरे रंग की--

जिसके बाहर एक लोहे का जाली गेट लगा है सामने कु --

और लाइट जल रही है एक गायं बैठी है।

हां तो दोस्तों मेरे सामने एक बिल्डिंग है।

जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा है।

के ऊपर गिलास है और पास में सै सात कुर्सियां भी है।